लाइटे लगी हुई हैं खम्ब पर पेड़ है गोल चक्कर का बना हुआ है चक्कर पर सड़क है गोल।

एक आदमी बाहर बैठा है बोर्ड लगा हुआ है महाविद्यालय का--

फूलों से लाइटो से सजी हुई है रात का वक़्त है।

और मंच बना हुआ है जिससे ऑडियंस यहाँ बैठ के देख सके पंखे लगे हुए हैं।

यहाँ पर बहुत सारी बसें हैँ अलग अलग तरह जगह की बसें मिलती हैँ आसमान हैँ आसमान में बादल हैँ।